यहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है यहां पर बच्चे बैग लिए हुए हैं।

यहाँ पर बैगनी कलर के परदे लगे हुए हैं।

यह हॉस्पिटल के बाहर का दृश्य है।

यहां पर उनकी शिक्षक सफेद पोशाक में खड़ी है।

यहां पर बहुत सारे लोग चटाई पे सोए हुए हैं।

नीचे में बहोत सारा बैग और चप्पल जूते रखे हुए हैं।

यहां पे झुलवा पिछलन पट्टी और भी बहोत सारी चीजें हैं।

यह एक होटल का दृश्य है जहां पर पीली कलर की सोफाये रखी हुई है।

पार्लर के बाहर एक भूरी कलर की टूल रखी हुई है।

यह एक उद्यान है यहां पर बहुत सारे कचरा पड़े हुए हैं।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

इसकी दिवाले की कलरे पीले और ग्रे कलर की है।

यह गांव के रोड का दृश्य है।

यहां पर एक आदमी खड़ा होकर सारे को कुछ समझा रहा है।

यह जंगलों के बीच में है।

इस ग्राउंड से होते हुए एक बाइक जा रही है जिस पर दो लोग बैठे हुए हैं।

सेवा केंद्र के बाहर मिट्टी को जमा किया गया है।

बाहर भी बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है।

यहां से कुछ दूर पर छोटे छोटे बच्चों वाले कार भी रेक पे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रूम का दृश्य है जहां पर एक शीशे में मछलियों को रखा गया है।

इसमें एक सफेद कलर का शंखा दिखाई दे रहा है।

उसके ऊपर हरे रंग के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक बड़ा सा नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है।

इससे पीछे बहुत से रंग बिरंगे इमारते दिखाई दे रही हैं।

यहां पे सीढ़ियां भी स्टील की लगी हुई है।

इसके बाहर एक मैट बिछाई हुई हैं।

यहां पर लाइट और पंखे दिखाई दे रहे हैं।